और जो जो रेलवे स्टेशन है वो--

यहाँ बहुत सारी चप्पलस है और जूते भी हैं जो जूते अलग हैं और चप्पल अलग जगह पे हैं।

बहोत ही मतलब अच्छे दाम में हम लोग को देता है।

साइकिल कि दुकान हैं जिसमे बहोत सारे साइकल रखे गये हैं और--

दो अंदर घर के अंदर जाने के लिए दो दरवाज़ा है जो बहुत ही बढ़िया है और शानदार --